और वो मतलब बड़ा सा ब्रिज है ब्रिज के बगल में--

और अह कुछ आदमी काम कर रहे हैं और ब्रिज के नीचे--

और वो मशीन सब है और जिम व्हाइट कलर का है नीचे उसमें टाइल्स लगा हुआ है।

एक छत हैं छत का ढलइया अ धली--

और उसमें पीछे में एक बड़ा सा--

और उसके बगल नीचे टाइस है ऊपर में टा ऊपर में --

और एक आदमी भी उसमें पानी में आधा--